ऊपर नीला आकाश दिखाई दे रहा है यहाँ पर सामने में एक बाइक खड़ी है जिसकी दूसरी तरफ एक व्यक्ति को देखा जा सकता है ये देखने में--